और कितने अच्छे मंदिर की अम ये तस्वीर देखिये--

हेल्लो भाई लोग आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यह एक लाइब्रेरी है यहाँ पर अनेक प्रकार कि किताबे रखी जाते हैं यहाँ से किताब लेकर पढाई भी कि जाते है और पढाई से बहुत से आदमी बड़े आदमी बन सकते हैं।